यह एक झुला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप आदमी सबी झूल रहे हैं कितने मजे आ रहे हैं। बच्चे भी हैं और पास मे पेड़-पौधे भी काफी शानदार लग रहे हैं। झुल्ले को कितने अच्छे तरीके से मनाया गया है।

यह एक घर है यहां पर पर शादी होने वाली है यहां पर आप देखते है की बहुत सारे आदमी भी है और बल्ब को बहुत घर को बल्ब से बहोत अच्छी तरिके से सजाया गया है और यहां पे एक दुल्हा का कार आके रुका है ।